और बस के रूट किनारे कुछ तो --

इसके बहोत ही अच्छा हो रहा है। तो बहोत ही अच्छा लग रहा है। इसके लिए कितना अच्छा है।

ये देखिये ये घर है की खिड़की --

घर कुछ जगह बनता लकड़ी के घर लग रहा है। कुछ सकते है --